सर बच्चो को समझा रहे है पढ़ाने के लिए।

घास वगैरह रखे हैं होटल यहां पे लोग खाना खाते हैं।

यह सब लग्जरियस होटल है।

यह घर सजाया गया है। शायद लग रहा है यहां पर कुछ त्यौहार वगैरा शादी वगैरा है और --

वगैरा भी लगा है और आदमी बहुत ही आदमी यहां पे है।

यह एक शायद मॉल वगैरा का व्यू लग रहा है।

बगल में गमले वगैरा रखे हैं इधर भी रखे हैं।

लोहे की रेलिंग गई हुई है।

इधर माचिस वगैरा तेल वगैरा वो जलाने के लिए दीपक रखा हुआ है।

ये एक रेस्टोरेंट वगैरा में किसी बर्थडे वगैरा--

यह एक प्रोग्राम होने यहां पे होने जा रहा है।

यहां फूल मंडी है यहां पे फूल वगैरा बिकते हैं एक स्टूल पड़ा है।

यह एक होटल है और यहां पे लोग खाना खा रहे हैं।

यह एक कोचिंग है एक टीचर पढ़ा रहा है।

नाव से फोटो खींची जा रही है ये लोग शायद कहीं जा रहे हैं।

ये फूल हैं उनको उगाकर यहां से फिर वो दूसरी जगह लगाया जाता है फिर वे बड़े बड़े हो ज --

एक औरत भी खड़ी है और वगैरा भी है यहां।

पेड़ वगैरा बहुत सारे हैं यहां--

रोड बनाने वाली मशीन है पेड़ लगे है घर भी है और कचड़ा भी --

मशीन भी खड़ी है और और डंडा है।

बहोत अच्छा व्यू दिख रहा है यहां से बहुत पानी है इसके अंदर बहुत--

यहां पे गांव का सीन लग रहा है दूर दूर--

दूर पे घर है और तीन चार लद्दे खड़े हैं।

यहां पे क्यू_अर रखा है और ट्राफी रखी है।